एक व्यक्ति ठेला लगाया हुआ है जिसपर सेव और फल फ्रूट बेच रहा है।

टेबल दिख रहा है जो की पीले कलर में है और सामने दो व्यक्ति भी खड़े हैं।

यहां भी डेस्क रखा हुआ है जो की सफेद कलर पीले कलर में है और दीवार पर काफी पोस्ट लगाया गया है।

इसके पीछे लकड़ी का कपबोर्ड रखा हुआ है जो कि दीवार टाइप बना हुआ है।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

सामने एक पुरुष खड़ा हुआ है जिसका चेहरा ब्लर है और वह पैसे लिया है हाथ में।

इस तस्वीर में एक आदमी फोटो लेते हुए नजर आ रहा है जिसका चेहरा ब्लर है।

यहां पर बहुत सारे खाने पीने के समान और पीछे कोका कोला का फ्रिज भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत ही बड़ा सफेद कलर का घर दिखाई पड़ रहा है।

ग्राउंड में एक इंसान भी खड़ा हुआ है यहां पर बैरीकेडिंग लगाई गई है सामने कुछ घर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान में कुछ मैगी और मसाले लटके हुए सामान दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान भी दिखाई पड़ रहा है और यहां पर तार भी है जो की बिजलीयों के हैं।

इस तस्वीर में हमें एक टीचर दिखाई दे रहा है जो कोई बच्चों को कुंग फू कराटे सिखाते हुए नजर आ रहा है।

और पीछे बहोत ही गहरी खाई दिख रही है और नीचे काफी हरे भरे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे--

यहां पर एक ट्रक भी खड़ा हुआ है ठीक इसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

बैनर लगा हुआ है शीशा जो कि उसके आजू बाजू लाइटें चल रही है।

इस तस्वीर में हमें एक होटल का कमरा दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक बेड रखा हुआ है उसपर गद्दे सफेद कलर के हैं और दो सफेद कलर के तकिये भी रखे हैं।

एक हरा कलर का तकिया है इसके पीछे दीवारें सफेद कलर के हैं उस पर पोस्टर भी लगाए गए--